लोग घूमने आते हैं यहाँ बैठते हैं वर्क --

ये लक्ष्मी माता है और गणेश जी है और हनुमान जी है।

की गई है पेड़ पौधा वगेरह है ।

है यहाँ आ साडी इ-इ साड़ी शर्ट सूट वगैरा बैग आदि मिलती हैं।

यह पार्क है जिसमे एक बिना टहली का पेड़ है यहाँ लोग बैठे है और मोबाईल वागेरह चला रहे है।

यह महादेव का शिवलिंग है इसका पूजा होता है इसमे बहोत--